देखिये बहुत अच्छा जगह है यहाँ पर मस्त क्या बोलते है तस्वीर छपा हैं इंसान भी हैं यहाँ पर झंडा गाड़ते है वो वाला भी हैं और गमला हैं उसमे फुल हैं बहुत अच्छे अच्छे चीज हैं।

और यहाँ पर बहुत अच्छे क्या-क्या लिखाया हैं बहुत अच्छे-अच्छे--

वीडियो बना रहे हैं बहुत लोग कसरत कर रहे हैं मशीन है।